ये अम्रुदा वोल नि लगरा और हाजरी फुल ले लगौन बराबर फुल अ बगिज ले व् और घर एग ल टाइल्स छे लगरनि ले मनन थाल छू।

और वहाबटी लाईट तार ले लगा रखन और ये मकान एंच पुर न बैणाई पुरा।

य ये जंगलो इलाको यिमा ठुला ठुला अ और यिमा जी तिरपाल टाइप के घर ।

झंडो वालो कूड़ो हो और जख काम चलरा औरो का काम चलरा रुमने दिवाल लगा रखा और वेका तरफ़ा होज़ लगा रखा और देर्य हर बिछाारा खंड।